खेत है। दो वो मर्द मसाला छीट रहा है। साइड में खेत उत है अथि गाछ विरिच है। उसके बाद --

बाल-दाढ़ी सैलून है यहाँ पे। एक ठो मरदाना खड़ा है। एक ठो फोटो लगा हुआ है सीढ़ी है।

ढेर सारा आसमान है। हरा-हरा दिख रहा है।

लाल कलर चोंच के पास है उसका चोंच लंबा है हरा-उरा दिख रहा है उसका बगल में चोंच फैला हुआ है उसका --

रेंगवा सब मछली है इसमें।